यह एक थिएटर नजर आ रहा है। यहाँ पर हम्म मुँह पर लाइट आ रहा है।

वहाँ पर एक कुर्सी लगी है कुर्सी के सामने एक डेस्क बना हुआ है उसी के सामने एक आईना भी लगा हुआ है।

सामने में एक बड़ा सा पार्क है। पार्क में छोटा-छोटा --

ब्रेड हम्म अहा अलग तरह के अलग-अलग प्रकार के मसाले सभी चीजे यहाँ पे मौजूद --

पीछे में एक बड़ा सा अम्म घड़ी भी अम्म लगाया गया है सामने से एक बाइक आते हुए नजर --

और काले रंग का एक टेडी बेयर एक पीला और काला लाल रंग का टेडी बेयर है।